और वहाँ पे कुछ कुए टाइप के बनाके पानी भरा जा रहा है | अ बहुत सारी मिट्टी निकाली जा रही है जगह जगह गड्ढे करके पानी भरा जा रहा है।

सजाया गया है यहाँ पर और कुछ बनाना लीव्स लगे हुए हैं दोनों साइड ।

यहाँ पर बहुत सारे अ मेटल्स के जार रखे हुए हैं लोहे के जार रखे हुए हैं अ स्टील के जो कि बहुत बड़े बड़े जाप रखे हुए हैं।